यहाँ हमे सामने एक पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमे हरे कलर की डिजाइन लगी हुई है कुछ झंडे लगे है कुछ गुलाबी रंग के भी डिजाइन लगी है।